बैग रखा है पर्दे टंगे है ए.सी. लगा है।

यहां स्टेट बैंक का ए_टी_एम है।

और लड़के ने जीन्स पहनी है।

और जाली लगी है और आस-पास सुखी टहनियाँ है मिट्टी है।

आस-पास हरे-भरे पेड़ है बहोत सारे लोग--

हैं उनके सर के नीचे तकखिया है दूसरे अंकल खड़े हैं उनके पैर में कुछ लगा रहे हैं।

उनके पास नीचे मशीन है और सामने भी एक।

खिड़की लगी है उसमें पर्दा टंगा है ।

यहाँ बहोत बड़ा गार्डन है बहोत बड़े -बड़े पेड़ है।

जो ईंटों की बनी है और थोड़ी-थोड़ी जगह पर बनी है।

बीच में और साइड में रास्ता है आस-पास पेड़ है।

और बड़े है घने है नीचे घांसे है।

और बड़ी दुकानें हैं कार हैं लोग चल रहे हैं।

सामने खंभे है ऊपर बड़ी ईमारत --

है और आसपास भी घर बने हैं।

उसने जीन्स टी-शर्ट पहनी है नीचे बहोत बड़ा--

यहां बहुत बड़ा सारा चर्च है।

ऊपर घड़ी बनी है बहुत सारे तार जा रहे हैं आसपास लोग हैं।

यहां बहुत बड़ा स्विमिंग पूल है।

चार-पाँच डॉक्टर बैठे है एक लेडी डॉक्टरनी बैठी है।

यहाँ बहुत बड़ा मैदान है आस-पास कुंडिया रखी हुई है घर है।

और ऊपर झंडे लगे हैं पर जगह बड़े-बड़े से पेड़ है।

फूल और पत्तियां तंगी है लाइट लगी है।

नीचे सूखी पत्थियां और फूल गिरे हैं और बाइक पे अंकल गेट के बाहर जा रहे हैं।

और सीढियाँ है और पेड़-पौधे है।

और अलमारी बनी है एक काला कलर का सटुल नीचे रखा है।

सामने बड़ी मूर्ती है बाकी आसपास उससे छोटी मूर्तियां हैं और यहां नीचे बहुत सारी औरते बैठ --

यहां बड़ा सा तालाब है आसपास सुखा है एक पिंजरा है।

और दूर बड़ा सारा जंगल है जिसमें पेड़ हैं बहार जालियां लगी --

इस जिधर बड़े से गेट है जालियाँ लगी है बाइक जिसमें खड़ी है स्कूटी है।

यहाँ सामने बहोत सारी कुंडियाँ रखी है लाइटें लगी हुई है काँच--

देखते हैं आसपास बाइकें खड़ी है स्टॉल लगा है और --

बहुत सारे फाउंटेन है जहाँ से पानी निकल रहा है।